ये एक रॉय टाइल्स एंड सेनिटेशन का दुकान है।

और इस दुकान मे बोहोत सारा टाइल्स और सैनिट्रिसन का समान मिलेगा।

दुकान का वाल ग्लास में दिया हुआ हैं।

एक ऑफिस जैसा लग रहा है।

और ऑफिस पूरा सफेद कलर का है और नीचे में लाल कलर का है।

ये एक अजंता डायरी का दुकान है।

यह टीन का दुकान है।

यहां पे अंडा का पैकेट और नीचे में बहुत सारा सामान है।